यह एक गार्डन का दृश्य है गार्डन में--

ये है जो नाग की तस्वीर है।

यहां आस पास में घास बनी है।

बहोत पुरानी इमारतों जैसी डिजाइनें बनी हुई है।

यह एक प्रोफेशनल सैलून के बाहर का दृश्य हैं एक बिल्डिंग हैं।

और वाटरमेलन भी है यह बहोत फ्रेश फ्रूट लग रहा है।

सामने एक दुकान का दृश्य है। जहां राज ट्रेडर्स लिखा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है। यह एक कपड़े की दुकान है जहाँ बहोत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है।

आसपास में पर्दे भी लगे हुए हैं और एक--